वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है करो योग और रहो निरोग --

हमें अपने बिस्तर पर अच्छी चादर बिछानी चाहिए और हमें अपने बिस्तर पर कभी खाना नहीं खाना चाहिए।

गेंदे के फूल कई प्रकार के होते हैं नारंगी नारंगी रंग का पीला रंग और गेंदे के फूल फूलों की माला भी बनती है।

बच्चे हमेशा दोड़ते हुए अच्छे लगते हैं बच्चे कभी दोड़ते रहते हैं तो काभी मोटे नहीं होते।

जब मे स्कूल जाया करता था टो मुझे एक दिन भी छूटी लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। विद्यालय में विद्यार्थी को सब कुछ सीखने को मिल --

शादी में मंच में दूल्हा-दुल्हन बैठते हैं|

और मछियारे उन्हें बंध बाहर निकाल देते हैं फिर उन्हें बाजारों में ऊँ का मार देते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं।

मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तो --

लोग भी लोगों की जनसंख्याएँ भी बहुत ज्यादा हैं।

हमारे समय पर तो --